दुकान है ग्रिल है पौधे हैं पेड़ है।

नीचे एक आदमी बैठा है।

बहोत सारे अलग अलग मशीने हैं।

और खंभे लगे हुए हैं।

गेट है बहोत सारे झाड़ है।